और पत्थर ठेर सारे लगे हुए हैं।

और आगे फूल वगेरा भी लगा हुआ है और गुब्बारे वागेरा बलूनस वागेरा भी लगा हुआ है दो कलर में।

आइ थिंक और बोहोत सारे था खाने पीने का आइटम

और पेड़-पौधे ढेर सारे हैं और एक हॉस्पिटल टाइप में या होटल टाइप मे कुछ बना हुआ है।

बोहोत सारे नारियल के पेड़ हैं और डम जंगल के बीचो बिचे बगीचा बना हुआ है।

महजीद में बहुत ढेर सारी लाईटे और कलर की महजीद है पूरी।

यहां पे एक बड़ा सा तालाब है। तालाब टाइप में है।

एक बड़ा सा म्यूज़ीअम टाइप मे गेट बना हुआ है।